-- रहे है एक लड़की दिख रही है।

इस चित्र में हमे बड़ा महल दिख रहा है छोटी खिड़कियॉँ दिख रही है एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है ऊपर मीनारे दिख रहे है एक डब्बा दिख रहा है सड़क दिख रही है।